कला कला का टी शर्ट पहना हुआ है जो अ स्त्री कर रहा है एक शर्ट को जो शर्ट है ग्रीन कलर की और वो भी नीले कलर के टेबल पे।

बिल्डिंग को देख के लगता हैं कि ये शायद एक ही स्कूल हैं साथ ही साथ हम सामने देख पा रहे हैं की इसमें प्लेग्राउंड हैं इसमे कुछ बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे--

दो वाहन चल रहे हैं और कुछ चार पहिए वाले वाहन चल रहे हैं।

अ पौधे दिख रहे हैं साथ ही साथ हम किनारे किनारे पे देख पा रहे हैं कि लाल कलर के पत्ते वाले भी पौधे लगे हुए हैं।

अह जैसे कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक आदमी खड़ा हुआ है जिसके बाल सफेद हो गए हैं।

थंभ बना हुआ है जिसमें गन्ने रखाएं हुए--

जिसके ऊपर में बहोत सी अ चटाई बिछे हुए हैं जिसके ऊपर मछलियां रखी गई हैं।

जैसा कि इस पिक्चर में हम देख पा रहे कि हम एक नदी के किनारे --

जैसे कि हम इस पिक्चर में देख पा रहे है की एक नर्सरी की पिक्चर है जिसमें अअ--